दीवाल से जुड़ी लोहे की खिड़कियां लगाई गई है।

पीछे कुछ बड़े पौधे लगाए गए हैं।

सामने एक छोटा सा बिस्तर पर हरे रंग का चादर बिछाई गई है।

एक बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

यहां काफी साफ सफाई एवं सजावटे--

पीछे कुछ कुर्सियां भी लगाई गई है।

यहां नीचे टाइल्स लगी हुई है।

दीवार को फूलों एवं कुछ कपड़ों से सजाया गया है।

यहां पानी भरा हुआ है बहुत सारे जलीय पौधे इसमें उगे हुए हैं।

यह समय प्रातः काल का है।

एक बल्ब जलती हुई नजर आ रही है।

यह तस्वीर एक बहुत बड़े होटल की है उसमें कांच वाले खिड़कियां लगाई गई हैं।

यह एक अद्भुत काली कारी का दृश्य है।

सामने एक टेबल लगी हुई है जिस पर माला रखे हुए हैं।

प्रवेश द्वार पर एक इंसान खड़ा है।

बहुत सारे चपले नीचे में है।

अंदर में एक बहुत बड़ा पलंग पर गद्दे एवं बिस्तरे बिछाए गए हैं।

बहुत सारी लोहे की खिड़कियां लगाई गई है।

यहां जय मां अंबे कैटरिंग्स लिखा गया है।

ऊपर में बस पड़ाव संख्या पंद्रह लिखा हुआ है।

यहा एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है एक महिला नीचे जाती हुई नजर आ रही है।

एक बल्ब बहुत चमक रहा है।

काफी साफ और नीला है।

जैसे पत्तागोभी टमाटर गाजर आलू प्याज इत्यादि।

ऊपर में कुछ केले टांगे गए हैं।

यहा काफी साफ सफाई है।

यह एक कार्यक्रम का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पर एक मंच बनाया गया है।